और निचे आसमानी कलर का एक कारपेट सा बिछा हुआ है और दो अंकल बैठें हुए हैं मेग्गी टेबलों पर रेड कलर की टेबुल है शायद उन पर बैठें हुए हैं और दोनों न शर्ट पहनी हुई हैं।

उत्तराखण्ड लिखा हुआ है और दो ट्रक से टेंपो से हैं और एक बाईक से एक अंकल जी जा रहे हैं कुछ रखे हुए हैं अपनी बाईक पर और रोड है एक आसमानी कलर का बोर्ड लगा हुआ है और ग्रीन --

और वो अंकल का हाँ-हाथ दिखा रहा है और उन्होंने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

शर मे लाइट क्रीम कलर पुता है दीवाल पे और वाइट कलर भी है एलो कलर के टेबल पे एलो कलर बिछा हुआ है। >

चनमे एक डौने में हरे कलर का पत्ता रखा हुआ है और उसमे एक स्टील की चम्मच रखी हुई है और उसमे कुछ खाने का रखा हुआ है जिसपे बहोत सारा मसाला है।

यह एक हाउस है यहाँ पर बहौत सारी दो तीन चार कारें खड़ी हुई हैं बस खड़ी हुईं है दो तीन बस खड़ी हुई है एक वाइट कलर की बस है।